एक औरत है यह औरत सुन्दर है अच्छा भी है यह औरत डांस कर रही है यह औरत लाल कलर की साड़ी पेहनी है।

यह एक फल का दुकान है यहाँ पे कई तरह के फल मिलते हैं यहाँ का फल बहुत ही मीठा और ताज़ा भी है।

यह एक हिरन है यह हिरन बहुत ही सुन्दर है यह हिरन घास खा रहा है।

यह एक जिम है। यह जिम बहुत ही अच्छा है। यह जिम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे एक आदमी शरीर मनाने के लिए आते है।